एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक बैंक दिखाई दे रहा हैं।

और हमें यहां पर एक समंदर भी नजर आ रहा है।

और हमें यहां कर आसमान का रंग सफेद दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

और यहां पर हमें कुछ--

और हमें यहां पर एक दुकान भी नजर आ रही है।

कॉर्नर कैफे लिखा हुआ है।

इन ड्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस फोटो में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अराइवल ।

इस फोटो में हमें एक बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है।